इसके पिछे बहोत सारे बिल्डिंग है और कार्तिक जी और सरस्वती जी भी है और यहाँ एक मंदिर में पूजा हो रही है।

एक यह एक बर्थडे पार्टी लग रहा है जहाँ पर ऑरेंज और हरे रंग का बैलून से सजाया गया है और रेड कलर का कारपेट बिछाया गया है और एक आदमी झाड़ू लेकर खड़ा हैं।

और एक हरे और एक हरे रंग का पेड़ दिख रहा है और एक सीमेंटेड आपका कुछ दिख रहा है।

यह एक घंटाघर दिख रहा है जहां जो हरे सफ़ेद ऑरेंज कलर की लाइटिंग दिय गए हैंऔर--

और बहुत सारे आदमी भीड़ जमा कर खड़े है और मंदिर के गेट में फूल लगाएं हुए हैं।

और दो आदमी चल रहे है और एक पर्पल और वाइट रंग का बिल्डिंग दिख रहा है और बहुत सारे घास दिख रहे हैं और एक लैंप पोस्ट भी दिख रहे हैं।

और पिंक कलर का लाइटिंग किया गया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है और वहाँ पे आपके लाल सफ़ेद फूल से सजाया गया हे|

यह एक शादी का मंडप लग रहा है जहां पे रेड कलर का सिंघासन बिछाया हुआ है ।

और उसके पीछे बहुत सुन्दर से वाइट कपड़ा ओर रेड और व्हाइट कलर के फूलों से सजाया गया है और नीचे एक लाल रंग का कारपेट लगा हुआ है और एक व्हाइट रंग का कूलर भी है ।

यह एक पानी का बहाव दिख रहा है है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहै है और बहुत सारे पत्थर दिख रहे है पानी का बहाव बहुत ज्यादा ही तेज़ लग रहा है पानी का रंग सफ़ेद है।

और एक गार्डन किया हुआ है जो की बहुत हरा- भरा है और रास्ता बहुत ज्यादा साफ़ है और पानी का रंग सफ़ेद है जो बहुत तेजी से जा रहा--